इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक बहुत पुराने जमाने की टाइम में बनी हुई एक सरकारी दफ्तर हैं। जो की हम देख पा रहे हैं कि बहुत पुराने जमाने कि--

जोकि अलग-अलग काम को करने के लिए है अलग-अलग जगहों लिए है जैसे कि ओम ट्रैवल किशनगंज से भागलपुर के लिए और श्री कृष्णा पुत्र जो कि किशनगंज से पटना जाने के लिए।